एक बार गाड़ी में भी चढता है रेल्वे गाड़ी में यार स्टेशन में मस्त मज़ा आ रहा है मस्त एक सुंदर इतना सुंदर स्टेशन है की का बताए दिखने में इतना मज़ा दिख रहा है स्टेशन --

इतना में गरीबी हो गया की का कहु कितना में चोर टाइप में रहते यार इतनी दुकान है बेचारो में भी बेचता ऐसी कपड़ा-वपडा लगता है यार का बताए।

है यार में भी उस जगह रहता तो घूमते यार इतना मस्त सुंदर दिख रहा है मस्त--

इतना मस्त दिख रहा है यार बढिया सुंदर दिख रहा है यार का बताए एक बार में भी रहता तो एक बार देखते यार मस्त उस जगह जाते भी मस्त या हो रहा है यार उस जगह--

दुनिया इतना मस्त मौहोल बड़ा सुकिन बनाये है यार इतना मस्त सजाए है यार में भी रहता तो इधर घुम के अंदर-बाहर देख पाते यार इतना मस्त दुकान बढ़िया शो शॉपिंग सजाय है उसको क्या बोलते उस जगह में भी तो रहता एक बार--

उतना शॉपिंग करता यार इतना मस्त दुकान है शॉपिंग करने लायक यार मैं भी रहता दुकान में तो शॉपिंग करता यार उधर ही रहता तो दुकान के पास मस्त दुकान नज़ारा दिख रहा है बहुत सुन्दर नज़ारा दिख रहा है।

एतना सुंदर मंदिर है के का बताइयेगा इतना पब्लिक लोग मंदिर में दिख रहे है मस्त कुछ भी कर रहे है कुछ समान चढ़ा रहे है उन लोग मस्त एन्जॉय ले रहे है मस्त दर्शन कर रहे है उन लोग का--

इतना मज़े भी ले रहे है वो लोग इतना सुन्दर दिख ही रहा है इतना सुन्दर के कहिये मत--

एतना मछली मार के मढ़ाइन हे एतना सुंदर दिखत हा की का बताव एतना मछली हे यार महू रतेव मछली मारतन त महू बेचतन दुकान महू मछली-वछली रखे रतन मछली वछली बेचे रतन एतना मस्त सुन्दर मछली हे।